इधर बहुत सारी बिल्डिंगस है और यहां पे एक मंदिर है मंदिर के बाहर ठेले वाला खड़ा हुआ है जिस पर हार रखे हुए हैं एक मोटा आदमी भी नीली कलर की टीशर्ट पहना हुआ है और उसके हाथ में कुछ है जोकि यह कर रहा है खुला हुआ--

नीले रंग का हरे रंग नारंगी रंग का है पीछे बहुत सारी किताबें रखी हुई है--